एक बच्चा है। बाइक वाले हैं। एक साइकिल वाले हैं और आगे में बाइक लगा हुआ है।

उमम लगा हुआ है गाँछ और दूर में एक ठो व्हाइट कलर का घर है और दो गाड़ी लगा हुआ है एक बाइक है। रास्ता बहोत अच्छा है रोड और एक टेबल लगा हुआ है।

और यहाँ पर दो लोग भी खड़े हैं सामने में।

हरी सब्जी है। बोहोत अच्छा लग रहा है देखकर।

और उसके बगल में पेड़ ओड़ भी है और दूर-दूर तक घर ओर भी नजर आ रहा है।

पक्का थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है और अच्छे स्पेस है यहाँ पर। घूमने उमने का है और दूर दूर तक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है आसमान --

सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। कोई एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कोई कुछ कुछ लिख रहे हैं।

और उसी के बीच में ही हिरन लोग है और पेड़ हैं बहोत बड़ा-बड़ा और दूर दूर तक बहोत बड़ा-बड़ा पेड़ हैं।

और दो लेडीज़ हैं और दो जेंट्स हैं और सामान काफी है और हर चीज हर एक--

घास नजर आ रहा है। सामने में घेरा हुआ है।

कोई खड़े हैं कोई जा रहे हैं।

दुकन लगा हुआ है और खिलौने

और मेला लगा हुआ है।